और साइड में एक गेट पकड़ने का--

आदमी है जो मशीन चला रहा है।

और दिवाल है छोटे छोटे खाने में बनाकर रखी गई है।

एक कोई होटल है साइड साइड में--

बहुत सारे गिफ्ट्स ले रहे--

इन्हा और बड़ा सा घर--

और साइड में दो अलमारी लगी हुई है जो पैक है।

इस जहां प्लेट के पास में एक आदमी खड़ा है जो व्हाइट शर्ट और ब्राउन कलर का पैन्ट पहना है।

जिसमें लॉक लटका हुआ है साइड में--

आगे की तरफ एक चेयर रखि है।

ये दीवाल पे पोस्टर लगे हुए हैं।

छोटे छोटे गमले हैं उस--

इसमें बहोत सारे फूल लगे हुए हैं इस--

और अंदर की तरफ कोई बे--

और साइड में एक प्लेट प्लस की दुकान है।

एक आदमी जिस साइड से आ रहा है।

बीच में एक पेड़ है जो आधा ही थोड़ा सा दिख--

इसमें एक बच्चा है और एक बच्ची है और बहुत सारी भिड़े है।

यह एक फ्लावर्स की दुकान है।

तथा अलग ग्रे कलर काला कलर गेट लगा हुआ है।

यहाँ तो पोस्टर लगे हुए--

स्काई ब्लू कलर का टॉप है।